बहुत से लोग गाड़ियों में अपना मनोरंजन कर रहे हैं कुछ लोग झूलों में बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हैं।

तीर्थ स्थल मतलब घूमने का स्थान है यहां पर पानी का झरना बह रहा है।

पेड़ पौधे भी यहां पर है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है यह बहुत ही अच्छा दृश्य है।

यह सभी पेड़ की छांव में खड़ी और बैठी है चारो तरफ इसके पेड़-पौधे हैं।

यह गमले बहुत ही अच्छे हैं उनके पास में एक कुर्सी रखी हुई है कुछ गमलों में --

डीजल या पेट्रोल सभी गाड़ियों में आवश्यकता होती है यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

टैंकर पेट्रोल से भर रहा है या डीजल से भर रहा है इसके पास में घर है।

जिसमें कुछ बच्चे बाहर बैठे हुए हैं और कुछ अं बड़े लोग अंदर गए हुए हैं पास में एक पंखों की दुकान है।

और स्टेज मे बहोत अच्छी तरीके से सजाया हुआ है और बहुत से स्पीकर रखे हुए है।

और कुछ लड़कियां खड़ी है कुछ बैठी है बहुत से पोस्टर भी लगाए हुए हैं यहां पर --

पढ़ाई हो जाती है इसमें तो।

बहुत ही बड़ी कंपनी है अच्छी है यह कंपनी तो एक बउत ही अ--

पो से सजावटें की हुई हैं बहुत अच्छी सजावट की हुई है एक गार्ड बाहर बैठा हुआ है।